इस पिक्चर में हम दिख रहे हैं कि ये एक जिम का बहोत बड़ा हाल है जहां पर--

जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं सामने--

सामने एक गाड़ी खड़ी है और उसके पास एक आदमी खड़ा है जिसने सफेद और नीले रंग के कपड़े पहने हुए है और जिन साफ--

जैसा की हम इस पिक्चर में देख रहें हैं जे एक किताबों की दुकान हैं।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं जे एक मिठाई की दुकान है जहां पर--

दो पंखे लगे हुए हैं और कुछ एक लाइट दिखाइ दे रही है और सामने--

इस फोटो में बताया गया है जे ये--

बहोत सारे अच्छी सी शोभायात्रा को सजाया गया है रंग बिरंगे फूलों से और आस पास केले के पत्ते लगाकर उसको अच्छे से सजाया गया है और कुछ लोग--

और जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है।

शर्टे पहने हुए हैं और फूलों को तोड़ रहे हैं।

पिंक कलर की भी दिख रहे हैं और सामने कुछ लाइटें लगी हुईं हैं और एक--

सफेद रंग का पंखा दिखाई दे रहा है।

पेन और पेंसिलो की दुकान है जहां पर बहोत सारे कलर के पेन रखे गए हैं पेंसिलस रखी गई है।

बड़े बड़े लिफाफे में फूलों को रखा गया है जहां पे लाल और पीले रंग के फूल दिखाई दे रहे हैं और सामने दो लोग बैठे हुए हैं।

जैसा कि हम इस फोटो के माध्यम से देख रहे हैं जे एक स्टेशन की फोटो है।

जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं जहां पे--

दो बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं खेतों के बीच बीच में कुछ पानी सा दिख रहा है।

अ सामने कुछ लाइटे दिख रही है और--

जैसा कि हम देख पा रहे हैं मुझे एक एयरपोर्ट की फोटो दिखाई दे रही है।

सफेद रंग की लाइटे इस फोटो में दिखाई दे रही हैं।

बहोत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं सामने एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे छोटे पत्थर इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं।

खाली हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं जहां पे बहुत खुला सा खेत है पीछे कुछ--

जैसा कि हम देख रहे हैं ये एक मैरिज रिसॉर्ट की फोटो है।

जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं ये एक रेलवे ट्रैक है जहां के पर--

पीले रंग लाल रंग की ग्रीले दिखाई दे रहे हैं सामने एक बहोत बड़ी लाइट दिखाई दे रही--